और जहाँ पर पेड़-पौधे भी बहोत सारे हैं।

जो आगे की साइड हैं उनकी संख्या चार है और जो पीछे है उनकी संख्या काफी अधिक है।

हेलो दोस्तों जैसा की आप देख सकते हैं हमें एक बड़ा सा रूम दिखाई दे रहा है जिसमें --

और ऊपर बहोत सारे लाइटे और चाँद-सितारे भी लगे हैं और उसमें तीन खिड़कियाँ भी हैं।

तो हेलो गाइस जैसे की हम सभी देख सकते हैं कि हमारे सामने जो चित्र है वह एक --

और एक ऑटो रिक्शा खड़ा है और बाइक है और कुछ आदमी हैं और सामने --

और यहाँ घर है जो नीले कलर का है।

उससे एक आदमी निकल रहा है और उसके बाहर एक बुलेरो खड़ी है और एक ऑल्टो खड़ी है।

यहाँ पर दो मंच है जो की दोनों अलग-अलग हैं और उसके उपर एक ब्रिज है जो की एक नदी के उपर स्तित है।

यह एक फिश की शॉप है जहाँ पर फिश के टुकड़े किए जा रहें हैं और उन्हें --

फिश के टुकड़े कर रहा है और एक फिश को काट रहा है अलग-अलग कर कर --

यहाँ एक ग्रोसरी शॉप है और यहाँ पर बहोत सारे समान रखा हुआ है।

तो हॅलो गाइज जैसा की हम सब लोग देख सकते हैं की --

और पीछे की तरफ बहोत सारे पेड़-पौधे लगे हैं और उसके पीछे एक घर भी हैं यह नजारा बहोत ही --